कान है उम्म अ जिसके आगे एक आदमी बैठा हुआ है और वहां से भी एक चेयर पर बैठा हुआ है।

उस दीवार पे लिखा हुआ है एम_पी बिरला सीमेंट परफेक्ट ।

इसके उपर एक बड़ा सा पेड़ है।

एक चेयर पे बैठ गया है और इसने अपने सामने एक छोटा सा टेबल रखा है जिस पे इसने कुछ बिस्किट्स रखे गए हैं।

एक पेड़ के आगे व्हाइट कलर की गाड़ी है जिसका छत ब्लैक कलर का है।

इस दीवार पे भी हिंदी से लिखा गया है और वहां से एक डिश भी है।

लिखा है कोका कोला युतिका पान प्लेस एंड जनरल स्टोर ।

ये एक सड़क है जो कि बहुत ही बड़ी दूर तक दिख रही है।

इसपे एक बोर्ड भी लगा है जिसपे लिखा है चर्च ।

जिनके हाथ में ड्रम है और इन्होंने स्काई ब्लू कलर के पहने है।

और वहां पे ये लोग इस पहाड़ पे ऊपर ऊपर जा रहे हैं।

तीन सब्जियां हैं दाल है चटनी है।

छत भी है जो की ब्लैक और ग्रे कलर की बड़ी छत है।

इसमें बहोत सारे कपड़े हैं लड़कियों के कपड़े बच्चों के कपड़े हैं।

और वहां पे लिखा है आगे ब्लू कलर बोर्ड पे कस्टमर सर्विस ।

यहां पर ये गाड़ी को कुछ पेट्रोल जैसा भर रहा है।

इस स्विमिंग पूल में कुछ लोग है। जो मजे कर रहे हैं।

जिसके सामने एक समुंदर भी बहोत बड़ा है।

जिसमें ये कुछ लगाने की चीजे है।